अलग अलग प्रकार के मंदिर हैं मंदीर में अ काइसी जम रही हैं पीछे साइड घना जंगल हैं आजु बाजुमें बोहोत सारे पेड़ एक लाइट का खम्बा लगाया हुया हैं ऊपर आसमान मे--

चित्र मे हमे एक व्यक्ती एक व्यक्ति की फोटो खिचते नजर आ रहा है वो अपने बाल कटवा रहा है वो उसकी फोटो खीच रहा है मोबाइल का लाइट जल रही है दो तीन बॉटल रखी है पाउडर रखा है फेस वॉश रखा --

ये चार्जर लगे हुए हैं प्लग लगे हुए हैं एक कैंची रखी हुई है।

हे और बहुत सारे लोग हम्म वाटर में स्लाइड कर रहे हैं कुछ बच्चे--

चित्र में हमें व्हाइट कलर की दीवार दिखाई दे रही है इसके ऊपर ए.सी. है वह भी व्हाइट कलर की है एक व्यक्ति एक व्यक्ति की सेल्फी ले--

इस चित्र में हमे ऑटो दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग ऑटो हैं एक का कलर ग्रीन ब्लैक और येलो हैं और एक ऑटो का कलर येलो और ब्लैक हैं। आजु रोल--

आजूबाजू मे बहुत सारी दुकाने भी लगी है बहुत सारे घर भी है लोग भी जा रहे।

इस चित्र में हमे एक बड़ा सा और पार्किंग दिखाई दे रही हैं निचे साइड पार्किंग हैं ऊपर साइड होटल हैं उसमे अलग अलग प्रकार की लाइटिंग जल--

इस चित्र में हमे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो की बैठे हुए नजर आ रहे हैं एक--

बाइक खड़ी हुई शटर हैं जो कलर की हैं दिवार का कलर ग्रीन हैं पोस्टर लगे हुए हैं शटर हैं ब्लैक कलर की अंदर एक व्यक्ति बैठा हैं टेबल हैं।

चित्र में हमे एक व्यक्ति जो की प्रेस करते नजर आ रहा हैं वो पाइप से प्रेस कर रहा हैं ये कपड़ो पे बहुत सारे कपडे पड़ रहे हैं येलो कलर की दिवार हैं पोस्टर लगे हुए दिवार पे ऊपर खम्बे हैं।